यहाँ पे एक दो बोत्तल रखी हुई है जो इनको रखा ग्रीन कलर का है इसमें सील लगी हुई है ग्रीन कलर की स्काई ब्लू ।

सारे रेड ब्लू ग्रीन येलो ऐसे सारे कलर की यहाँ पे पैकेट्स रखे हुए हैं।

इस तस्वीर में हमें एक मैदान दिखाई दे रहा है इसमें मैदान में हिरण दिखाई दे रहा है और यहाँ पे हमें पेड़ दिखाई दे रहे हैं बड़े-बड़े इसके अलावा हमें यहाँ पे अ आसमान दिखाई दे रहा है।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

इस तस्वीर में हमें डेकोरेशन दिखाई दे रही है जो बर्थडे की है यहाँ पर बैलून्स लगे हुए हैं बैलून्स पिंक कलर के लग वाइट कलर के और एसे ग्रीन कलर के लगे हुए हैं यहाँ पे।

इस तस्वीर में हमें एक ग्राउंड नज़र आ रहा है और इसमें दूबा और छोटे छोटे पौधे लगे हुए हैं इसपर हिरण घास खा रहा है।

और यहाँ पे बड़े बड़े पेड़ भी लगे हैं पीछे हमें आसमान नज़र आ रहा है आसमान का कलर हमें वाइट नज़र आ रहा है।

इस तस्वीर में हमें एक मॉल दिखाई दे रहा है मॉल में बहुत सारे तस्वीरें लगी हुई है स्टेचूज लगे हुए है और यहाँ पे कुछ लोग खड़े हुए है।

इस तस्वीर में हमें नाव नजर आ रही है नाव में निचे पानी भरा हुआ है पानी में यहां पे बगुले वगैरा लगे हुए है।